एक व्हाइट कलर की है येल्लो कलर की है पिंक कलर की है और ये एकही प्लेट में रखी हुई है।

टेक्टर में जलूस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ--

ये हमें कुछ प्राचीन टाइप का मेहल या मंद मंदिर वगेरा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है।

पे अलग अलग कलर की बुक्स दिखाई दे रही हैं।

ऐसा लग रहा है यहाँ पे रेस या हॉर्स रेडिंग होर्से--

यहाँ पे हमें महिलओं के कपड़े दिखाई दे रहे --

सर अगर आए यहां पे कुछ फंक्शन्स वगेरा हैं।